स्टूडेंट्स सब पढ़ेल आवे छे बोर्ड लागल छे बहोत बरका बोर्ड लागल छे तथा पढ़ाई हो रहल छे अभी नाय हो रहल छे पढ़ाई खाली छे रूम पूरे| अभी एक घंटा के बाद पढ़ाई होते |

ये गाड़ी पार्किंग करने का सिस्टम नीचे है गाड़ी दुकान में ऊपर मॉल है अभी एक ही गाड़ी दुकान में ऊपर कमरा है।

समुंद्र का सीन छिओ पहाड़ पर से खिचा गया छिओ । पूरे समुंद्र में पानी ही पानी छिओ । पहाड़ भी दिख छिओ और बादल ऊपर से देखने में झकास लग छिओ एक दम ब्यूटी प्लस लग छिओ । हा हा --

एता पार्क छीये नारियल के गाछ छीये पार्किंग छीये बहुत अच्छा फोटो लागल छै बैकग्राउंड हेय देखे में अच्छा लागे छै पूरा हरा-हरा पूरा छै हरियाली छै और सब छीये बहुत मस्त लागे छै।

एक तरह से आदमी बचिए के जाना चाही ने ते साला खाईए जेएते।

मंदिर छे मंदिर के बगल में नदी छे नदी में पानी भरा छै पानी भर के जाये छै जल ढारेल भगवान के मंदिर में जल ढारे छै बहुत बड़का सीढ़ी छे उपर चढ़प करे छेके

एत्ते एयरटेल बैंक छिके आउर सब कोय अइले छे खाता खुलाबय ले बगल में आदमी छिके आर पोस्टर लागल छै एयरटेल बैंक और आदमी सब अइले ये खाता खुलाबे ले पैसा निकाले ले कोय कुछु करै ले।

के छे बहुत अच्छा लीची छे लीची छे एकरा लीची के हेलो जे छे पूरे लाल-लाल लीची छे एकर प्लेट पे राखल छे और टाँगल छे खाए में बहुत मीठ हेते करेटे के नीचा में रखल छे ला के दुकान में बेच रहल छे।

किराना का दुकान आटा है मैदा है शैंपू है। बर्गर है सब चीज है आरती कर रहा है बोर्नविटा है बच्चे को खिलाने वाला सर्फ है साबुन है कुरकुरे से--

और लेकिन हरा-हरा घाँस मालिक इसलिए मन उदास छे।

सानी कुट्टी खेय रहल छै गोशाला छै गरू के गाय छै ऐता गाय के खाना देय देला छै गाय हरा-हरा बहुद ----